यहां पे तीन वॉश बेसिन दिखाई दे रही है और तीन नल दिखाई दे रहे हैं।

एक पिंक कलर की स्कूटी है जिसके इंजन और पहिया खोल दिए गए हैं।

के सामने ब्लू कलर के बोर्ड लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक गार्डन की तस्वीरें यहां पर बहुत सारी एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है।

उसके पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक लाइब्रेरी की तस्वीर है।

यहां पे एक कपबोर्ड में बहुत सारे बुक्स रखी हुई दिखाई दे रहे टेबल के ऊपर भी बहुत सारे बुक्स रखे हुए दिखाई दे रहे दीवार के ऊपर भी बहुत सारे चित्र बने हुए दिखाई दे रही है।

एक रेड कलर की चेयर है और एक ब्राउन कलर की चेयर दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारी मछलियां रखी हुई है।

और ऊपर पेड़ भी दिखाई दे रही है।

मैरून कलर का टी शर्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें ग्रीन कलर के पेंट लगी हुई हैं दोनों तरफ।

हवा भरने की एक पाइप दिखाई दे रही जो येलो कलर की है।

एक साइड में एक पेड़ भी दिखाई दे रही--

एक चेयर है जो येलो कलर में बनी हुई है।

एक आदमी खड़ा है जो रेड कलर का टी शर्ट और पेंट पहना हुआ है।

लोग चल रहे हैं यहां पे इसके आसपास भी पेड़ लगी हुई दिखाई दे रही है एक लड़का साइकिल पकड़ के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

होटल में पेंटिंग पीले और रेड और ग्रे कलर के लगे हुए हैं।

मुच्छ चार पांच चम्मच रखी हुई है।